उसके ऊपर बहुत सारे पोस्टर भी लगाए हुए हैं।

तथा यहां पे एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाए--

जहां पर बहुत सारे आदमी नजर आ रहे--

यह एक बस स्टैंड का दृश्य--

यहां पे एक बड़ा सा पेड़ भी नजर आ रहा है।

जहां पर बहुत सारे दुकान नजर आ रहे हैं जैसे साहू वस्त्रालय साहू श्रृंगार स्टोर गिफ्ट कोंडनर ।

यह एक बिल्डिंग का बाहर का दृश्य--

तथा इसके अंदर कपड़ों का एवं कई तरह के दुकान भी है।

तथा यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

और हाथ में कुछ लिया हुआ है।

जहां पर दो बिल्डिंग नजर आ रहे--

जहां पर बहुत सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

तथा यहां पे फैक्ट्रियों के अंदर बहुत सारे सामान रखे गए हैं।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

तथा यहां पे बहुत सारे सजावटे भी किए गए है जैसे टेंट भी लगाया गया हैं।

तथा यहां पे बहुत सारे टाइल्स भी लगाए गए--

यह एक चर्च का बाहर का दृश्य--

और यहां पे बहुत सारे प्लास्टिक भी फेंके नजर आ रहे हैं।

तथा यहां पे एक छोटा सा गेट भी नजर आ--

तथा यहां पे बहोत बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहे--

तो यहां पे दो छोटे छोटे रोशनदान भी नजर आ--

और यहां पे दो कार भी नज़र आ रही हैं।

तथा उसमें बहुत सारे लाइट भी लगाए--

तथा वो यहां पे वो गेट भी लगाया --